एक लेडिस पाइप पकड़े हुए पानी डाल रही है पेड़ों में उसके सामने एक स्ट्रीट लाइट भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है पास मे बहोत सारी बिल्डिंगे भी बनी हुई दिखाई दे रही हैं।

और लेडीज कुर्ता और सलवार पहने हुए दिखाई दे रही है जिसमें गोल्डन कलर की बॉर्डर बनी हुई --

के पास में एक खिड़की बनी हुई दिखाई दे रही है जहाँ पे कांच लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

ये इस तस्वीर में एक फल दिखाई दे रहा है जहाँ पे उसमे नीले और लाल कलर की पट्टियां बनी हुई दिखाई दे रही --